इसके ठीक बाहर बहोत सारे छोटे-छोटे पौधो को बड़े ही व्यवस्थित ढंग से रखा गया है।

गमले पर भी बहुत सारी छोटी छोटी पौधे लगाए गए हैं।

उसके कैंपस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाए गए।

सामने बहुत सारे मकई नजर आ रहे हैं।

उसके ठीक बगल में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के झाड़ मौजूद हैं।

एक छोटा सा इंटा का टुकड़ा भी दिखाई दे रहा है।

दीवार का रंग हल्का ब्राऊन है। ऊपर सफेद कलर से पेंट किया गया है। ऊपर बोहोत सारी सफेद लाइटें भी लगाई हुई हैं।

जिसमें बच्चों के बैठने के लिए बहोत सारी कुर्सियां लगी हुई हैं।

उसके ठीक आगे एक बिल्डिंग बनते हुई दिखाई दे रही है।

पीछे एक दीवार है जिस पर सफेद कलर से पेंट किया गया है।

यहां कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं और कुछ बच्चे खाते हुए नजर आ रहे--

ओम का आकार बनी हुई है पीछे एक रेफ्रिजरेटर भी है।

चट्टानों के ठीक पीछे बहुत सारे पेड़ नजर आ रही है।

नीचे जमीन पर कुदाल बेलचा गिट्टी आदि दिखाई दे रही है।

उसके ठीक दोनों ओर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ लगाए गए हैं।

बड़ा सा आदमी भी टहलते हुए नजर आ रहा है यह दिन का समय है और आसमान बिल्कुल साफ है।

स्तंभ पर भी सफेद कलर से पेंट किया गया है।

अंदर अलग अलग प्रकार के सामानों को बेचा जा रहा है।

रोड के ठीक सामने दो टू व्हीलर खड़ी हुई नजर आ रही है।

यह एक दुकान की तस्वीर है जिसमें बहोत सारे दुकान के सामने बाहर और अंदर मौजूद है।

बहुत सारी एल_ई_डी टी_वी है जिस पर अलग अलग प्रकार के चैनल जलते हुए नजर आ रहे हैं।

ऊपर बहोत सारे सफेद लाइटें लगाई गई है। ऊपर का रंग सफेद रंग से पेंट किया गया है।

स्कूल का नाम संत डोमिनिक सेविजो कॉलेज लिखा हुआ है।

इसके ठीक आगे एक बहुत बड़ी मैदान है जिस पर बहुत सारी घास दिखाई दे रही है घास के ठीक ऊपर एक कुत्ता नजर आ रहा है।

ऊपर है दीवार पर सरस्वती माता की पोस्टर लगाई गई है।

रेलवे ट्रैक के ठीक बगल में छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं।